यहां एक चर्च बना हुआ दिख रहा है। सामने दरवाजा दिख रहा है। नीचे बेडिया बनी दिख रही है। साइड में खिड़कीयां दिख रही हैं उसमें जाली लगी हुई दिख रही हैं।

यहाँ एक लकड़ी का सोफा बना हुआ दिख रहा है। उपर लकड़ी की डिजाईन बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ एक टेबल लगी हुई दिख रही है। उसपे मछलिया रखी हुई दिख रही है। नीचे टाइल्स दिख रही है।

बोहोत सारे जेन्स दिख रहे हैं पीछे दो लेडीजे बैठी हुई दिख रही हैं। इसके पीछे एक दीवाल दिख रही है।

यहाँ पानी दिख रहा है। पानी मे बोहोत सारे पत्ते दिख रहे हैं। एक पेड़ गिरा हुआ दिख रहा है इधर एक --

यहाँ एक घर बना हुआ दिख रहा है ऊपर बहोत सारे पंखे दिख रहे हैं वायर लगे हुए दिख रहे हैं।

उपर बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। रास्ता दिख रहा है। छोटा पौधा दिख रहा है।

अंदर जाने का रास्ता दिख रहा है लोग दिख रहे है एक रस्सी बंधी हुई दिख रही है।

यहाँ एक रास्ता दिख रहा है। एक गेट लगा हुआ दिख रहा है उसमे जालियां दिख रही है।

नीचे जमीन दिख रही है सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यहाँ बोहोत सारे फुल दिख रहे हैं मालाएं दिख रही हैं पत्ती दिख रही है बॉक्स दिख रहे हैं।

यहाँ एक कार्ड दिख रहा है। नर्सिंग होम की हैडिंग डली हुई दिख रही है। डॉक्टर का नाम दिख रहा है।

कांच लगा हुआ दिख रहा है। बलून दिखाई दे रहे हैं।

यहॉं एक बिल्डिंग दिख रही है। गेट दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है।

यहां एक बैनर लगा हुआ दिख रहा है ऊपर हैडिंग डली दिख रही है डॉक्टर का नाम दिख रहा है।

नीचे बोहोत सारे दरवाजे दिख रहे है। घास दिख रही है ऊपर भी घास लगी हुई दिख रही है।

यहाँ एक बास्केट में बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

वायर बंधे हुए दिख रहें हैं नीचे भी एक दीवाल दिख रही है एक डांट दिख रहा है।